यह कोई बहुत बड़का महल है जहां आगे तीन ए आदमी है दो बच्चे हैं एक लेडी है।

मॉल के बीच में एक लंबी सी ऑरेंज कलर का पोल है। चारों पट्टी से जंगल झाड़ रहे हैं। शीशे लगे हुए हैं ऊपर नीला आसमान--

यह कोई पैसेज है जहां बहुत जो की बहुत लंबा है। ऊपर भुरा कलर का छत है।

यह कोई नर्सरी का फोटो है जोकि जिसके अंदर बहुत सारे गमले हैं गमले के ऊपर काफी सारे पौधे रोपे हैं जोकि--

दो तीन अंकल है जोकि मछली बेच रहे हैं ऊपर से तीन लाइट जल रही है काफी सारी मछली है छोटी बड़ी है सब तरह की मछली है।

जिसके नीचे महात्मा बुद्ध का फोटो लगा हुआ है बगल से दो फूलझड़ी निकल रही है।

एक कंटेनर करके कुछ बनाया हुआ जिसके अंदर लोग बैठ सकते ऊपर नीला कलर का आसमान है जमीन पे काफी सारे गंदे फैले हुए हैं।

और न्यू देल्ही भी लिखा हुआ है अगल बगल में काफी सारी दुकाने हैं।

यह एक पोस्ट ऑफिस का फोटो है जिसके बाहर एक गाड़ी लगी हुई है।

और कुछ साइकल रैक में रखी हुई है उजाला कलर का बोल्ब बल रहा है नीचे का भूरा कलर का टाइल्स है।

और डायरी वूरी रखे हुए हैं ऊपर लाल कलर का घड़ी टंगा हुआ है जिसके अंदर टाइम दिख रहा है।

काला ये काला कलर का दीवार हो गया है बगल में हरा कलर का दीवार पे काई टाइप का है।

और अंदर स्कूल है ऊपर काफी सारे जंगल झाड़ी ऊपर नीला कलर का आसमान है उजले कलर के बादल बादल हैं और लाल कलर की पट्टीयां हैं।

इस फोटो में एक बच्चा दो पेड़ के बीच में चढ़ा हुआ है जिसका मुंह ब्लर है।